एक व्यक्ति खड़ा है जिसने नीले कलर शर्ट पेहनी है ब्लैक कलर की पेहन रेड कलर की टोपी लगा रखी है पेड़ दिखाई दे रहे हैं नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ यहा सामने कुछ पुस्तके पुस्तकें रखी हुई है।